यहाँ की जो रोड है वो मठमैले रंग की है | एक डिवाइडर है जो टूटा हुआ है जिस पे मिट्टी पड़ी हुई है |

क्रीम रंग की है जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है | जिस पर मदर डेयरी लिखा है जो की नीले रंग का है |

इसमें कई प्रकार के केक और डोनट्स रखे हुए हैं।

थोड़े से पौधे लगे हुए हैं सामने एक बोर्ड है जो सफ़ेद रंग का है जिसके पास --

यहाँ एरोड्रम की जमीन जो है वह पथरीली है और मटमेले रंग की --

इसके पीछे कई सारी मशीने है मशीनों के पड़ोस में --

गमले हैं गमले के पास एक पेड़ लगा हुआ है जिसके पत्ते पीले और हरी है उसके पास में एक मूर्ति है।